आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही होगी जो की काफी कुशलता से बनाई गयी एक पत्थर को काट कर इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है।

एक ही पत्थर को तराश कर उस में कई तरह की नक्काशियाँ और अनेक की तरह की चित्रकारियाँ की जाती थीं। प्राचीन समय से यह बोहोत प्रसिद्ध है।

कुछ तबला वादक हैं और ढोलक वादक हैं और यहाँ पर एक एंकर भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है जिसे सांस्कृत प्रोग्राम कहते हैं।

इस तरह के पेड़ पौधे आप अपने घर में साजो-सज्जा के लिए रख सकते हैं और उनकी देखभाल कर अपने घर के वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बना --

यह बोहोत ही कुशल कारीगरों द्वारा बनाये गये हैं। हर सोनी की दुकान पर ये आपको मिल सकते हैं जोकि बोहोत ही बेहद काम हैं।

आप इस कलाकृति को देख रहे हो बेहतरीन बाके बिहार लाल राधा रानी की मूर्ति --

शैम्पू हेयरवॉश के लिए शैम्पू कुछ क्रीम्स और बिस्किट्स हर तरह की चीजें मिल सकती हैं।